तो जैसा की देख सकते हैं यहाँ पर एक यूंही कोई स्कूल या कॉलेज का सीन है स्कूल का है।

दोस्तों ये देखिए साउथ का कोई मंदिर है| आगे काली जी है दुर्गा जी है तीन पूरी वाली माँ महारानी जी है।

यहाँ पर क्या है डस्ट-डस्ट आ बरो क्रेपेन इंडस्ट्री है।

बहुत अच्छा है सुबह और शाम का यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा बनता है बहुत लोग योगा करते हैं।

दोस्तों ये देखिए ये एक मस्जिद का सीन लग रहा है| जो भी मुस्लिम है वो अपना गाड़ी पार्क कर के गया है| ये आंध्र-प्रदेश का सीन है।

क्योंकि गाड़ी पे सब आंध्र-प्रदेश की गाड़ी लगाया हुआ है तो वहाँ पे जाके आप अपना धर्म का पूजा कर सकते है| थैंक यू आइये |

तो जैसा की देख सकते हैं लोग नु नाव पे सवार है पंछी भी उड़ रहे हैं| तो ये दोस दोस्तों नाव का लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि --

तो ये आर्टिफिशियल अपार्टमेंट टाइप का घर बन रहा है आप भी बनावा सकते हैं इनसे।